इसके नीचे ई विंडो के नीचे एक मेज पड़ी हुई है जिस पे एक टी_वी रखा हुआ है।

यह कोई स्टेशनरी की शॉप है जहां पर रैक में काफी ज्यादा कापी किताबें लगी हुई नजर आ रही है।

यह बिल्डिंग कोई पुरानी इमारत है जो लाल ईंटों से बनी हुई है जिसमें एक छ ऊपर से पाइप आया हुआ है नीते नीचे जाते दिख रहा है।

जाली पे एक ब्लू कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे एक पोस्टर लगा हुआ है।

इस चित्र में तीन लोग नजर आ रहे हैं। एक लोग झाड़ू लगा रहे हैं। एक साइकल खड़ी हुई है। एक बच्चा है।

बगल में एक चबूतरा बना हुआ है जिसके ऊपर एक झंडा सा भी कुछ लगा हुआ है।

इस चित्र में चार महिलाएं नृत्य के पोज में खड़ी हुई हैं जिन्होंने लाल साड़ी और ब्लू साड़ी पहन रखी है।

उनके हाथों में लाल कलर लगा हुआ है और उनकी चोटी आगे की तरफ झूल रही है।

सामने एक बाउल में प्याज भरा हुआ रखा है। एक बड़ा सा भगोना रखा हुआ है और सामने कटोरियाँ भी रखी हुई हैं।

उसके पीछे क्यू_आर कोड रखे हुए है सामने रैक में और भी कपड़े लगे हुए हैं।

बैठने के लिए ब्लैक कलर की चेयर लगी हुई है उम लगी हुई है जिसका फर्श जो है वो रेड कलर में है सामने पंखे टंगे हुए दिख रहे हैं।

सारे लोगों ने तौलिया डाल रखी महिलाएं और पुरुष दोनों लोग इसमें है।

जिनका नीचे का हिस्सा गोल्डन कलर में है गोल्डन कर कलर की रेलिंग लगी हुई है।

साम बगल में इसके आरण भवन वन मुख्यालय र राणा प्रताप मार्ग लखनऊ लिखा हुआ है।

यह एक पूल प्लेइंग गेम है जहां पर दो पूल लगे हुए हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर के हैं। अ जिसपे बोहोत सारी रेड व्हाइट येलो बॉल पड़ी हुई हैं।

लोगों ने दो लोग जो खड़े हैं उन्होंने रेड और येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

और वो कुछ तीन फड़वे अ फावड़े और तीन तस्ले रखे हुए हैं बगल में और गीट्टी और बालु का ढेर लगा हुआ है उसके पीछे छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं।

स्टॉल में काफी ज्यादा चीजें लगी हुई नजर आ रही हैं सामने तीन झूमर भी लटक रहे हैं।

गोभी ब्रोकली केला खीरा अह प्याज लहसुन बैंगन और हरी मिर्च जैसी बहोत सारी तरह तरह की सब्जियां रखी गई हुई है।

उन्होंने जो कुत्ता व्हाइट कलर मे है उसके ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा रखा है।